दो बड़े बड़े पेट्रोल डालने की मशीन भी है।

कुछ इंसान भी काम कर रहे हैं।

बहुत सारे मिट्टियां है और ईटा भी बहुत सारे हैं।

और दुकान के टेबल पर चाय के पोस्टर लगा हुआ है।

मौसम एकदम नीला है और कोने पर थोड़े से बादल है।

इस पिक्चर पर शीशा से बने हुए एक रैक नजर आ रहा है।

इस पर काम चल रहा है और अभी तक नहीं बना।

कोने पर बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग है।

जमीन टाइल्स का बना हुआ है दीवार का कलर सफेद है।

दो सफेद रंग की छोटे छोटे फूल पॉट भी है।

ऊपर का कलर सफेद है और एक सफेद रंग का पंखा है।

बहुत सारे लाल और सफेद रंग की टायर भी है।

सफेद कलर की फूल लटकाया गया है रस्सी से।

पतले पतले लोहे भी है।

ऑफिस के पास बहुत सारा स्कूटर और बाइक भी है।

इस पिक्चर पर एक बहुत लंबा सा ब्रिज नजर आ रहा है।

और बहुत बड़े बड़े पत्थर भी है।

एक काला कलर का गेट भी खोल के रखा है।